चित में एक क्लीनिक दिख रही है जिसमें पलंग रखा दिख रहा है।

चित्र के अंदर एक रूम दिख रहा है रूम में दीवाल में नमः शिवाय लिखा है और लाइट बोर्ड दिख रहा है गमले दिख रहे हैं।

महात्मा जी राम की कथा सुना रहे हैं और कैमरा दिख रहा है और महिलाएं दिख रही हैं।

और आगे की भल्ला चाट दिख रहे हैं और एक आदमी--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

चित्र के अंदर एक पेट्रोल पंप दिख रहा है चित्र में एक आदमी बैठा दिख रहा है और--

गेट दिख रहें हैं एक और एक बिल्डिंग भी बनी दिख रही हैं।

शहरी अ लोक सेवा प्रबंधन विभा विभाग जिला कटनी मध्य प्रदेश--

और खूब सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं कुछ बच्चे यूनिफार्म पहने हैं।

आ को आ एक आदमी नहा रहा है बच्चे खड़े दिख रहे हैं।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

चित्र में पानी दिख रहा है चित्र में तार दिख रही है।